ये एक शादी करने वाला हॉल है स्टेज है जहाँ पे डेकोरेशन हुआ है एक अम्ब्रेला रखा हुआ है फ्लावर है चार बच्चे हैं नीचे मैट है।

काम करे रहे है बड़ा सा बोर्ड रखा हुआ है और दो ऊपर में लाइट लगा हुआ है।

छोटी सी बच्ची है रेड कलर का बलून है और प्लांट लगा हुआ है बगल में सैमसंग मोबाइल का शॉप है।

चेयर्स रखा हुआ है सामने छह चेयर्स रखे हुए है लाइट लाइट है नीचे लगा हुआ है माइक लगा--

बच्चा के हाथ में एक बैग है येलो कलर का एक आदमी टॉवल लिया हुआ है ऑरेंज कलर का--